यह सब्जी मंडी का फोटो है सब्जी बेंच रहे है | यहां पे कुछ लोग बैठ के कुछ लोग खरीद रहे हैं| यहां बाइक खड़ी है साइकल खड़ी है पेड पौधे हैं।

उसका डब्बा ब्लू कलर का है। स्टेशन पर खड़ी है। ऊपर तार लगा हुआ है।